दरवाजे पर कुछ बैलून लगे हुए हैं जिसका रंग सफ़ेद --

अंदर की ओर एक व्यक्ति--

पेड़-पौधे नजर आ रहे--

वहां खेलते हुए नजर--

जो कि कहीं खड़ी हुई दिख रही है।

कुछ हरे भरे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक दरवाजा भी नजर आ रहा है जिस पर एक पर्दा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक--

इस तस्वीर में कुछ कुर्सियां--

बहुत ही चिकना नजर आ रहा है ऊपर--

की दिख रही है कुछ लाइट --

तस्वीर में कई लोग नजर आ रहे है।

खड़े हैं और कुछ लोग इसमें बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं इनके पीछे कुछ हरी-भरी पत्तियाँ नजर आ रही है।

कुछ चट्टान के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं.

इस तस्वीर में बहुत सारे--

कुछ जूते भी नजर आ रहे हैं जो कि--

पीला है नीचे सड़क पर बहुत सारे लोग भी नजर--

भी नजर आ रहे है।

तस्वीर में एक मकान दिख रहा है।

पहिया वाहन भी नजर आ रहा है।

भी नजर आ रहा है जो कि दो मंजिला--

यह तस्वीर में बहुत सारा--

घर नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

उसके पीछे कुछ मकान भी नजर आ--

कई लोग नजर आ रहे है।

एक दीवार को सुंदर आकृति दी गई है और उसे सजाया हुआ है।

एक इधर साइड में कुछ सफेद--

जिसने कान में कुछ उपकरण लगाए हुए हैं उसके ठीक पीछे एक खिड़की है जिस पे एक पर्दा लगा हुआ है।

रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग नजर आ रहे है।

जो कि बहुत नजदीक है कमरे का दीवाल--

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

कुछ लोग नजर आ रहे है।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

भूमि भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे पेड़-पौधे हैं.

एक चौकी लगा हुआ है.

इस तस्वीर में बहुत सारे कुर्सी नजर आ रहा है।

जिसके कारण हरियाली दिख रहा है.

जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है।

और यह सभी व्यायाम कर रही हैं।

एक चादर बिछी हुई है।

उसके अगल-बगल में दो पौधे लगे हैं।

जो कि हरे भरे नजर आ रहे हैं.

उसके अगल-बगल कई दुकानें --

कई गाड़ियाँ भी वहां लगी हुई--

एक महिला और एक पुरुष--

उसके ठीक बाहर एक सड़क है।

अलमारी पर कई वस्तुएं रखी हुई--

तस्वीर में बहुत सी गाड़ियाँ नजर आ रही है जो कि सड़क पर लगी हुई है ।

बहुत सारी कुर्सियाँ दिख रही हैं ।

जिस पर सफेद और लाल कुब्बारे लगे हुए हैं ।

तीन मंजिला इमारत नजर आ रहा है जिसके ठीक सामने एक सड़क --

तस्वीर में बहुत सारे लोग नदी में खड़े दिख रहे हैं ।

कुछ लोगों ने हाथ जोड़ रखा है ।